बड़ी बड़ी बिल्डिंग भी है जो तिन चार बिल्डिंग दिखाई दे रही है।

एक लड़के की तस्वीर है उसके हाथ में एंडरोइड मोबाइल है उस और ल लड़के ने नीले रंग की टी शर्ट पहनी है और लड़के के हाथ में --